ये लइका मन क बर्थडे हे ता एला मांगाथे ता लइका मन केक ला काटथे।

अउ अउ खाए में भी अच्छा लगिस अउ लाइका मन भी खुश होइस।